यहा बहुत सारे फ्लेगस दिखाई दे रहे है यहा पर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है पिंक कलर दिखाई दे रहा है ओरेंज कलर दिखाई दे रहा है वाईट कलर दिखाई दे रहा है बहुत सारी गिट्टी दिखाई दे रहि है ईट दिखाय दे रही है।

यह एक बिलिंग का ग्रीन कलर दिखाय दे रहा है और पिंक कलर दिखाय दे रहा है यहा पे एक बॉउंड्री है जिस पर पिंक और ओरेंज कलर दिखाय दे रहे है बहुत सारे पेड़ दिखाय दे रहे है।

पास में खभे दिखाय दे रहे है रेड कलर और बहुत सारा सामान दिखाय दे रहा है।

पर्दे दिखाई दे रहे हैंब्लू वाईट पिंक येलो ओरेज दिखाई रहे है उन पर कुछ लाईट पिंक ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है चॉकलेटी कलर दिखाई दे रहा है।

बाईकस दिखाई दे रही है साइकल्स दिखाई दे रही है कार्स दिखाई दे रही है।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

और यहां पे बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहै है पिंक ग्रीन ब्राउन यहाँ पे बहुत सरे पड़े दिखाय दे रहै है ऊपर ग्रे कलर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर दिखाई दे रहा है यल्लो कलर दिखाई दे रहा है।

और बहुत कुछ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ रीलिंगस दिखाई दे रहा है यहाँ पे आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ पेड़ों पर ग्रीन और कुछ पेड़ो पे ग्रे कलर दिखाई दे रहा है और यहां--